काफी अच्छा लग रहा है ये केक और मतलब ये रखा हुआ है। एक तरह से बहुत सारी अच्छी चॉकलेट पड़ी हुई है एक जैस जैसे स्नैकर वैगरा भी।

लगी हुई है और पिंक कलर से कलर किया गया है। बटरफ्लाय बनी हुई है और काफी अच्छा लग रहा है।

पकड़े हुए हों और काफी सूरज --

चल रहे हैं। झूले भी काफी सारे लगे हुए हैं और एक लाल कलर झंडा लगा हुआ है और एक भैया है जो मास्क लगाए हुए है उन्होंने और एक आंटी भी जा रही है काफी सारे झूले-वुले भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे डांस हो रहा है पीछे शंकर जी की फोटो लगी हुई है।

यहाँ पर स्लाइडिंग बोर्ड की मदद से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर मतलब ऊपर उप पत्ते वगेरा लगे हुए हैं।